चल मान लो अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं और कुछ लो--

इस मस्जिद में उर्दू में कुछ लिखा हुआ है।

और यहां पर सुना सुना गाड़ी लटका पड़ी हैं।

टिशू पेपर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और इन प्लेट्स में कुछ चम्मच भी पड़ी हुई दिखाई दे र--

बहुत ज्यादा पानी दिखाई दे रहा है और इस झील के बीचों बीच बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे--

दे रहा है यह बहोत ही अच्छी क्वा--

और कुछ चेयर्स और स्टूल्स भी इसमें रखे हुए दिखाई दे रहे--